पीछे ट्रक दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

और वो बिल्डिंग का पहाड़ में है पूरा हाफ जो ग्रीन ग्रास है ग्राउंड जो पेड़ भी दिखाई दे रहा है सामने सामने में।

बनाया हुआ है पर कंप्लीट नहीं होके है।

यहां में कपड़ा दुकान दिखाई दे रहे इतना ब्रांडेड वाला स्टैंडर्ड से।

हमें बड़ा बड़ा से टेंपल जाने का गेट दिखाई दे रहे हैं।

एक थो पेड़ बड़ा से है पीछे का बदला भी पूरा सफेद कलर में है।

सामने सामने में घर लोग भी रहे हैं और एक गाड़ी भी दिखाई दे रहे हैं।

ये बहोत बड़ा सा रूम है दिखाई दे रहा है वहां में टेबल चेयर्स लोग बहोत ज्यादा से हैं।

टेबल जो येलो कलर में है चेयर जो व्हाइट कलर में --

उ सामान जो किचन के लिए और घारी वारी का सामान ये सब कुछ भी खाने का जिसने--

वहां में बैंबू से पूरा बनाके है नया नया कंस्ट्रक्शन समय का फिर सामने में एक--

बेम्बु से नीचे से ऊपर तक लगा के है।

एक कंप्यूटर है उसका सामने में बाक्स लोग हैं और कार्टून कार्टून बाक्स ।

और ऑनलाइन समान आया है जैसा भी है और वहां में एक इंसान जो पूरा कंप्यूटर --

दुकान का साइड में भी पूरा सामान रख गंदा से दिखाई दे रहा है।

यहां मे पूरा बड़ा वाला पानी दो डक जो स्विमिंग करती है।

सामने में राऊ राऊ करके तीन कलर तीन दिखाई दे रहा है थोड़ा सा पिंक कलर में।

ए चिड़िया दोनों जो ब्लैक कलर में है पानी भी थोड़ा ब्लैक में दिखाई दे रहे हैं।

हमें एक रूम दिखाई दे रहा वाइट कलर है वाल भी एक टेबल एक चेयर दिखाई दे रहे हैं चेयर कलर ब्लू कलर में है।

यहां में एक बड़ा सा रूम में समान जो बहुत अलग अलग तरह का है।

वहां मेज चेयर लोग रखें हैं लाइट पूरा जल के है।

ये के है और ड्राइवर भी है सामने में एक पेड़ भी है।

यहाँ मे पूरा बड़ा से दुकान दिखाई दे रहे--

यहां पे पूरा बड़ा सा जगह दिखाई दे रहा है एक बिल्डिंग का हाफ दिखाई दे रहा है नीचे में फूल लगा के है।

और आई लव कुछ लिखे पर यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं बाउंड्री भी पूरा--

एक जवान लड़का ऐसे और ऑटो कलर जो येलो कलर ग्रीन कलर में है।

नीचे का पूरा ग्रीन कलर में है ऊपर का पूरा येलो कलर में है बिल्डिंग में।

सामने सामने में डिस्को लाइट और यह पेड़ भी है सजा के--

हेयर स्टाइल में काट के है शर्ट पहन के ब्लू कलर का और पीछे में--

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जहां तहां पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं उसका बाद वो व्यू मे भी पूरा टाउन --